मंदिर को क्रीम कलर से पेंट किया गया है मंदिर के ऊपर मुझे त्रिशूल देखने को मिल रहा है मंदिर के साइड में मुझे--

मुझे यहाँ पर एक दुकान देखने को मिल रहा है मुझे यहाँ पर टेबल देखने को मिल रहा है टेबल के ऊपर मुझे फोन पे रखा हुआ है उसके अंदर मुझे --

मुझे यहां पर एक रोड देखने को मिल रहा है रोड के सामने में मुझे मोटरसाइकिल देखने को मिल रहा है मुझे--

मुझे यहाँ पे आदमी देखने को मिल रहा है आदमी ने डेनिम पहना हुआ है आदमी से --

बिल्डिंग देखने को मिल रहा है ऊपर में मुझे आसमान देखने को मिल रहा है मुझे पूरा नीला आसमान देखने को मिल रहा है ऊपर में --

मुझे यहाँ पे एक स्कूटी देखने को मिल रहा है मुझे उसके बदल में दो पाइप देखने को मिल रहा है मुझे --

यहाँ पर टाल सला हुआ देखने को मिल रहा है उसके बदल में मुझे टेबल देखने को मिल रहा है उसके बदल में मुझे दीप देखने को मिल रहा है मुझे यहाँ पर लोटा देखने को मिल रहा है उस दि --

धरते ऊपर ए_सी लगा हुआ है साइड में पेड़ देखने को मिल रहा है ऊपर में मुझे बादल देखने को मिल रहा है साले बादल है।

मुझे यहाँ पर प्लेटफार्म देखने को मिल रहा है प्लेटफार्म के बदल में मुझे नीचे में पटरी देखने को मिल रहा है प्लेटफॉर्म के ऊपर मुझे --

एत तो पेड़ देखने तो मिल रहा है पेड़ के ऊपर मुझे आसमान देखने तो मिल रहा है आसमान का रंग नीला है।

सामने में मुझे एल_ई_डी टी_वी देखने को मिल रहा है हमें बहुत सारे पिलर देखने को मिल रहे हैं जिसे सफेद रंग से --

मुझे यहाँ पे ब्लू तो लड़ता फर्स्ट देखने को मिल रहा है फर्स्ट के बदले मुझे --

यहाँ पे पिन तो लड़ता है मैट देखने को मिल रहा है मैट के गले मुझे बहुत सारे पिलर देखने को मिल रहे हैं पिलर तो --

मुझे यहाँ पे एक डायनासोरस देखने को मिल रहा है मुझे उसके पीछे पानी देखने को मिल रहा है पानी का रंग पूरा ताला है मुझे यहाँ साइड में --

जो ऊपर में पोल देखने को मिल रहा है जिसके ऊपर लाइट लगा हुआ है मुझे घर देखने को मिल रहा है घर से ऊपर पूरा व्हाइट कलर से ब्राउन कलर से पेंट किया गया हुआ।